पी है खड़ा बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है पानी का टंकी है एक बाइक का हाफ दिखाया जा रहा है और जलाराम--

एक स्टेशन दिखाया जा रहा है स्टेशन पर एक बहोत बड़ा सा सीढ़ी है जो वाइट कलर किया हुआ उसके बीच में पूरे से मैरून कलर्स किए गए हैं।